ए दुइ ठो गधा हे गधा में समान ढोए न हा काम आवेल ह और एहर दूनों हर आय एक ब्लून के बल खड़े है।

सैलून कर दुकान हे बाहर में बड़े-बड़े उम्म बड़े आदमी मन हछोटे आदमी मन ह काटथे अउर वो ह फेशियल कराय कराय के वाला ऑफिस हैं ।